मंदिर के बगल में एक तालाब दिख रहा है।

तालाब के बगल में कुछ सीढ़ियां हैं।

सीढ़ियों पर कुछ लोग बैठे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।

एक व्यक्ति ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

यहां पर भगवानों की तस्वीरें लगी हुई दिख रही हैं।

पुल के बगल में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही हैं।

कमरे का रंग सफेद है।

कई धर्मों का चिन्ह रखा हुआ दिख रहा है।

सबसे अच्छा चिन्ह ओम का है।

मॉल के अंदर कपड़े भी बिकते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

और दीवारों पर बहुत सारी चित्र बनी हुई हैं।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिख रहा है।

सड़क के दोनों बगल कुछ लोग --

कुछ लोग उन्हें खरीद रहे हैं।

स्टेडियम की छत पर भारत का झंडा लगा हुआ है।

तालाब की बगल में एक सड़क दिख रही है।

सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं।

सब्जियों में हमें टमाटर दिख रहा है।

कुछ लोग डांस कर रहे हैं।

एक व्यक्ति अपने फोन में फ्री फायर खेल रहा है।

घासों का रंग हरा है।

इस तस्वीर में हमें --

कुछ मेटल के समान दिख रहे हैं।

जमीन का रंग बूड़ा है।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

पार्क में बहुत सारे पेर लगे हुए हैं।

छोटी-छोटी घासें भी हैं।

हमें एक पुलिस कर्मी भी दिख रहा है।

गाड़ी का रंग नीला है।

इस दुकान में दो लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।

शरणम हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

एक लाल रंग की स्कूटी खरी हुई दिख रही है।

एक आदमी नीले रंग का पोशाक पहना हुआ दिख रहा है।

ये स्टोर का नाम वैष्णवी स्टोर है।

एक नाव चल रही है।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

कमरे में एक स्विच बोर्ड दिख रहा है।

इस कमरे में एक हेडफोन भी रखा हुआ है।

कुछ मेडल्स रखे हुए दिख रहे हैं।

मैदान की बगल में एक इमारत दिख रही है।

इस मैदान का कलर हरा है।

इस पार्क में कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं।

कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

यह एक सिस्टर है।

इमारत के अंदर एक बैंक है।

इस इमारत में एक रेस्टोरेंट भी है रेस्टोरेंट का नाम अ फैमिली रेस्टोरेंट है।

यह एक पार्क है।

ये लोगों ने नीचे पन्नी बिछाया हुआ है।

इमारत के बाहर एक सड़क दिख रही है।

हमें एक ठेला भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक --

इस तस्वीर में हमें एक रॉयल पैलेस दिख रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं।

स्टेज पर एक सोफा रखा हुआ है।

पेट्रोल पंप में बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई हैं।

पार्क के बगल में एक इमारत दिख रही है।

सड़क के बगल में एक इमारत दिख रही है इमारत का कलर सफेद है।

एक टोटो दिख रहा है।

टोटो का कलर ब्लू है एक व्यक्ति भीख मांग रहा है।

तालाब के बगल में बहुत सारी इमारतें दिख रही हैं।